दिवालो पर यहाँ पर खिड़कियाँ भी लगी हुई है और --

और अलमारियाँ रखी हैं जिनमे समान है | एक सीढ़ी रखी हुई है |

और इस लड़के ने एक सीर पर एक टोपी लगा रखी है |

और यहाँ पर एक चबूतरा है उसी के पर रखी गई है |.

खुला हुआ है जिसमें लाइट्स लगी है गते रखे हुए हैं।

और छज्जे पर डिजाईन बनी हुई --

मछलियाँ है छोटी मछलियाँ है कुछ बड़ी मछलियाँ है ।

उन्होंने ये लड़के है एक ने सफेद शर्ट --

और ये उपर की तरफ झरोखा बना हुआ है |

उन लाइट्स और पेड़ की परछाई पानी के पानी में दिख रही --